मुझे ये कुछ पाइप वाइप ऐसी लग रही हैं पाता नहीं।

येएए यहाँ पे मछलियों का बाज़ार है यहाँ मछलियाँ बेचते है काटते है और जो खाते है यहाँ पे लेने आ --

ये ग्राउंड है यहाँ पे सुबह-सुबह ब लड़के और लड़कियाँ आते हैं योगा करते हैं।

मोर्निंग में आते हैं सुबह-सुबह। उनको यहाँ अच्छा लगता है काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और योगा करते रहते --

ये दुकान है। सलून की लग रही है यहाँ सब लड़के अपने हेयर कट्टिंग कराने आते हैं। काफ़ी अच्छी हेयर काटता है तो |

ये काफी बड़ा शहर है यहाँ दुर्गा मंदिर भी है और यहाँ सब भक्त अपना दर्शन करने भी आते हैं और काफी बड़ी मार्केट है ये तो।

एं और ये बाहर शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है।